ये एक मॉल दिखाई दे रहा है जहां पे सभी जेंट्स के कपड़ें हैं। शर्ट है। टी-शर्ट है।

इसके बाहर बाइक लगे हुए हैं। साइड में एक और मकान है जो अभी पेंटिंग नहीं हुए हैं अंदर में हो चुका हैं बाहर में नहीं हुआ है।

ये जो मंदिल है वो हनुमान जी का है और यहाँ पे और मंदिल भी है जो शिव भगवान का है।

यहाँ पे सभी बच्चे लोग पढ़ने आते हैं। स्कूल में काफी बड़ा फील्ड है जहां पे बच्चे लोग खेलते हैं।

यह एक ए.टी.एम. है। जिसका नाम है सी.यू.बी. ए.टी.एम. यहाँ पे सभी लोग पैसे निकालने आते हैं।